झील दिखाई दे रही हैं जिसमें उम्म सतुरमुर्ग भी दिखाई दे रहैं हैं और सामने वाले झील में दो सतुरमुर्ग दिखाई दे रहैं हैं मेरे को सुंदर लग रही हैं और झील का पानी बेहद काला काला सा दिखाई दे रहा हैं।

हमे सामने एक फोटो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें एक नो का निशान दिखाई दे रहा है हमे एक हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है हमे एक बार भी दिखाई दे रही है जा पास--